संतरे रंग का और सादे रंग का कपड़े पहना हैं एक पुरुष के हाथों मे--

यहाँ पर एक थाली है जिसका रंग है काला और उसमें खाने की कुछ चीजें रखी हुई है एक तो --

और दक्षिणी भाषा में वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उस पोस्टर में महिला एक साड़ी पहनी हुई है जिसका रंग है नीला --

यहाँ पर एक सिंहासन लगी हुई है जोकि लाल और सादे रंग का है पास में ही फूल बने हुए हैं।

यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है जो कि हरे रंग का है और सीढ़ी बनी हुई है और ये सीढ़ी पत्थर से बनी हुई है और यहाँ--

सन्तरे काले और बुरे रंग का है यहाँ पे एक दरवाजा भी दिख रहा है।

सारी चॉकलेट्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे डब्बे में वह चॉकलेट करके रखे हुए हैं और एक वेट मीटर भी रखा हुआ है यहाँ पे--

और ग्राउंड में कुछ हरे-हरे घास भी है सीढियाँ बहोत ही साफ़ सुथरा नज़र आ रही है और वो लड़के ऊपर की तरफ चढ़ रहे है सीढ़ियों पे--

और वहाँ पे एक चम्मच भी रखा हुआ है और हरे रंग की चटनी रखी हुई है जिसमें एक चम्मच भी रखा गया है और बहोत ही स्वादिष्ट दिख रहा है।

और जींस पहना हुआ है पास में ही उसने हेलमेट रखी हुई है।

नीले रंग की लाइट जलाई हुई है जो कि बहोत ही सुंदर लग रही है इनके मंदिर में बहोत ही सुंदर से सजाया गया है पीले रंग का फूल है।